और राइट साइड दो आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ है और लेफ्ट साइड एक आदमी जो वाइट कलर का शर्ट पहनकर खड़ा है।

इस फोटो में एक बड़ा सा दुकान है जिसके ऊपर एक बोर्ड है। जिसमें लिखा गया है खुशबू इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स रोड डाल्टेनगंज।

ट्रे में दो कप है जिसके उपर चाय है और एक चाय में चम्मच लगाया गया है और एक चम्मच ट्रे में रखा गया है।

और बिल्डिंग के सामने बहुत सारे आदमी हैं।

इसके ऊपर चरखा बनाया गया है और लेफ्ट साइड आदमी बैठे हुए हैं।

राइट साइड एक जमीन पर बाल्टी रखी हुई--

पलंग के ऊपर एक बाल्टी भी रखा हुआ--

और लेफ्ट साइड सीढ़ी बनाया गया है और लेफ्ट साइड एक ऊपर में पुतला लटकाया गया है जिसमे कत्थे कलर का शट पहनाया गया है।

उसके सामने छोटे से गमला है जिसमें छोटा पेड़ लगाया गया है।

फोटो में एक बड़ासा बिल्डिंग है जो एक स्कूल है जिसका नाम वेस्ट फील्ड पब्लिक स्कूल है।

और दोकान के सामने बहुत सारे बोडे है जिस मे आलू प्याज लसुन वगैरह बहुत सारा सामान रखा हुआ है।